शिशा है आगे खिड़की है यहाँ बहुत सारा आता है दौड़ने के लिए दौड़ने वाला सब है मशीन सब तीन गो है चार गो तीन गो है ।

ये बढ़िया दिख रहा है बहुत सारा आदमी है चटाई लेके छत पे --

साल बहुत भीड़ हैं बहुत बड़ा मेला है गाड़ी चढ़ रहा है ब्रेकडांस सब कोई कूद रहा है ।

छोटा-छोटा दीवाल है पत्थर का। साइड में पहाड़ दिख रहा है बहुत बड़ा-सा। अच्छा --

मास्क लगाया हुआ है दुकान है छोटा-सा शीशा है साइड मे गाड़ी है चार चक्का साइकिल बाल्टी भी है बाइक भी है।